आसमान में सफेद बादल दिखाई दे रहा है।

गेट के सामने में बाइक है।

बहोत सारा पेड़ दिखाई दे रहा हैं।

उसमे लाइट जल के दिखायी दे रहा है।

मुझे इस पिक्चर में एक रूम दिखाई दे रहा है।

मुझे इस पिक्चर में दो आदमी दिखाई दे रहा है।

और एक ऑरेंज कलर का गाड़ी भी है।

ब्लैक कलर का ड्रम भी दिख रहा है।

साइड में चेयर भी दिख रहा है।

मैं भी देख रहे है।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

टेबल चेयर भी दिख रही है।

मुझे इस पिक्चर में दो आदमी दिख रही--

मुझे इस पिक्चर में एक आदमी दिखाई दे रहा है।